चित्र में डम्बल की फोटो दिखाई दे रही है जो की जिम में रखी हुई है।

चित्र में रुद्राक्ष का रक्षा धागा दिखाई दे रह है जो कि बोहोत सारे राखियो जैसा दिखाई दे रहा है। राखी बोहोत ही प्यारी लग रही है।

यह चित्र में रथ चलाता हुआ एक घोड़ासवार दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं जो कि द्वार के ऊपर दिखाई दे रहे हैं।

चित्र काफी बड़ी जमी की लग रही है। जिसको अच्छी तरीके से सजाया भी है।

चित्र किसी अंदर के द्वार का नज़र आ रहा है जिसमे तीन चार लाइटिंग दिखाई दे रही है ।

और उनके सामने फूल भी रखे हुए हैं।